ये एक डेम दिखाई दे रहा है डेम से पानी बहता हुआ आ रहा है बहुत प्यारा लग रहा है पत्थरो पर ये पानी दिख रहा है जो पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर बड़े-बड़े --

यहाँ अंदर की ओर आ घना जंगल सा दिखाई--

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की स्कूल की लग रही है।

एक कपड़ों की शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर लेडिस जेंट्स और किड्स के कपड़े अवेलेबल( है।

और एक लगा हुआ है एक जो की गेट है और यहाँ पर एक नेम प्लेट्स लगी हुई है बाहर की ओर चप्पले रखी हुई है जो क्लाइंट बैठे हुए हैं अंदर--